हमें यह एक मंत्रालय नजर आ रहा है मंत्रालय का कलर --

विगनन क्रीम कलर में चमक रहा है और बुक सेंटर संत्री कलर मैं चमक रहा है और स्टेशनरी में --

हमें यह एक सी.ओ.बी. ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है।

हमें यह एक बोहोत घना जंगल दिखाई दे रहा है । जिसमें एक मोर बैठा हुआ है ।

और ऊपर दो लाइट भी दिखाई दे रही हैं। दो-तीन और सोफे भी दिखाई दे रहे हैं हमें ।

छोटे-छोटे पेड़ भी नजर आ रहे है और दूसरी और दो पत्थर नजर आ रहे है साइड में |

जिन्होंने सेम कपड़े पहन रखे है लेडीज ने सेम कपडे साड़ी पहन रखी है।

जिसमे अलग-अलग प्रकार की सब्जियां--

जिसके पीछे लाल कलर की बत्ती चसी हुई है और हमें एक --

इसकी चार टांगे दिख रही है एक छोटी पूछ भी है।